यख मा जी एक बाटू कर जाणूयखम एक पाइप कर लग्युं यख मा जी जु छ कुछ लिंटर खर छ पण लग्युं यख मा जी एक ईमारत छ।

यख मा जी कई सारा रंग बिरंगा फूलों का झालर कर छन लग्यां यख मा जी सीढ़ी छन लगीं।

यख मा जी काजू छ रख्युं बादाम छ रख्युं संतरा छ रख्युं केला छन रख्यां सेब छन रख्यां अनार चं रख्यां यखम एक आदमी भी छा भितर कई सारा चिप्स कुरकुरा भी छन दिखेण लग्यां यखम एक लाखड़ु करा दिखेण लग्युं यख दीवाल मा जी पीलू रंग होयुं लड़ी छन यख मा जी लटकन लगीं।

यखम पटेला छन रख्यां सरया छन यख मा जी एक माकन छ पिछाड़ी फणा कई सारा माकन छन हरयां भर्यां डाला गाड़ी छन जाण लगीं।